यह एक घर की फोटो है यह घर तीन मंजिला है ।

होटल के कमरे में एक बेड लगा हुआ है। बेड पे तकिया है। बेड पर एक बैग भी रखा है। जो काले कलर का है। होटल का प्रयोग अक्सर हमलोग बाहर आते जाते हैं ठहरने के लिए करते हैं।

यह फोटो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रामपुर कारखाना देवरिया के है।

सफेद कलर के कपड़े पहन के बैठे हुए हैं। बीच में एक व्यक्ति राजा के भाती सर पे मुकुट और रंग-बिरंगे कपड़े पहन के बैठा हुआ है।